यहाँ केक बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन का बनाता है यहाँ का जो दुकानदार है वो बहुत अच्छा इंसान है।

ये सुप का पेड़ बहोत काफी अच्छा सुंदर लग रहा है इसका जो ग्राउंड है वो भी बहोत सुंदर है।

कहां कैसे करने से ये होता है वही सब का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है बेंच काफी अच्छे लग रहे है।

ये हाईवे बहोत अच्छा है ये हाईवे के उपर ब्रिज है ब्रिज में शायद ट्रैन चलती है हाईवे के निचे --

बिल्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। बिल्डिंग बहुत दिन लग गया होग--